हरी-हरी घास है। हरा सा फील्ड है। पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं ।

यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कला बना रहे हैं ड्राइंग कुछ समनों को लेते हुए --

लाल रंग की टेंपू है।

ये एक स्कूल है और यहाँ पे कुछ बच्चियाँ --

अ-म-म ग्रुप में पड़ रही हैं।

लड़के नहाते हुए दिखायी दे रहे हैं। पेड़ हैं हरयाली दिखई दे रही है ।

ये एक स्कूल है और प्रांगड़ है बहुत बड़ा --